ब्लैक कलर दिख रहा है ग्रीन कलर की चद्दर दिख रही है नीचे लाइटें दिख रही हैं पंखा वगैरा दिख रहा है गेंद दिख रहा है रेड कलर का स्टूल रखा हुआ दिख रहा है वाइट कलर दिख --

मेडिकल दिख रहा है इस पे डॉक्टर बृजेंद्र कुमार का नाम लिखा हुआ दिख रहा है डॉक्टर गीतांजलि का नाम भी दिख रहा है।

गमले दिख रहे हैं मकान दिख रहा है एक बैनर दिख रहा है बैनर में फोटो दिख रहे हैं नाम लिखा हुआ दिख रहा है खंबा दिख रहा है।

अं एक मकान दिख रहा है इंडिया बैंक का नाम लिखा हुआ दिख रहा है बोर्ड लगा हुआ है गे-गेट लगे दिख रहे है।

दुकान दिख रही है एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है सामान दिख रहा है बेंच रखी हुई है चेयर दिख रही है वाइट कलर की ऑरेंज कलर दिख रहा है।

बैनर लगे हुए हैं उसमे फोटो नज़र आ रहे हैं रोड दिख रहा है पानी फैला हुआ दिख रहा है कीचड़ दिख रही है ईटें वगेरा दिख रही है कचरा दिख रहा है बोहोत सारा रोड पे।